इनमें गमले में ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं।

जिनमें कुछ लेदर की कुर्सियां और कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां नजर आ रही हैं।

और इसके पीछे एक रोड है।

उसके पास एक कंप्यूटर रखा हुआ है।

और दीवार पर दो कैलेंडर भी लगे हुए हैं।

प्रस्तुत फोटो में एक प्राचीन मंदिर नजर आ रहा है।

और उस अल्पना पर शर्मा चाय प्रकाश कुल्फी चिकन करी और टुंडे कबाबी और दो हजार तेईस लिखा हुआ है।